जावा में इंस्टेंस फिल्ड्स पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे
इंस्टेंस फिल्ड्स के बारे में क्लास का इंस्टेंस फिल्ड्स ऐक्सेस करना
इंस्टेंस फिल्ड्स के लिए मॉडिफायर्स
और इंस्टेंस फिल्ड्स को कॉल क्यों करें
यहाँ हम उपयोग कर रहे हैं उबंटु वर्जन 1110 जेडीके 16 और इक्लिप्स इडे 370 इस ट्यूटोरियल का अनुकरण करने के लिए आपको ज्ञात होना चाहिए कि इक्लिप्स का उपयोग करके जावा में क्लास कैसे बनाएँ
आपको यह भी पता होना चाहिए कि क्लास के लिए ऑब्जेक्ट कैसे बनाएँ
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल के लिए कृपया दिखाई गई हमारी वेबसाइट पर जाएँ
httpwwwspoken tutorialorg हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट्स उनके व्यक्तिगत स्टेट्स को फील्ड्स में संचित करते हैं
ये फिल्ड बिना स्टैटिक कीवर्ड के घोषित होते हैं
हम स्टैटिक फिल्ड्स के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
non स्टैटिक फिल्ड्स इंस्टेंस वेरिएबल्स या इंस्टेंस फिल्ड्स के रूप में भी जाने जाते हैं
स्टूडेंट क्लास में वापस जाएँ जो कि हमने पहले ही बनाया है
हम देख सकते हैं कि यहाँ roll no और नामे इस क्लास के इंस्टेंस फील्ड्स हैं
अब हम सीखेंगे कि इन फिल्ड्स को ऐक्सेस कैसे करें
इसके लिए टेस्टस्टूडेंट क्लास खोलें जो कि हमने पहले ही बनाया है
हम दूसरा ऑब्जेक्ट बनाने के लिए स्टेटमेंट को हटा सकते हैं
हम प्रिंटलन स्टेटमेंट को भी हटा देंगे
अब हम स्टड1 और डॉट आपरेटर का उपयोग करके स्टूडेंट क्लास के फिल्ड्स roll no और नामे को ऐक्सेस करेंगे
अतः उसके लिए टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे रोल नंबर इस फिर प्लस स्टड1 डॉट दिए गए ऑप्शन से roll no चुनें एंटर दबाएँ फिर सेमीकॉलन
अगली लाइन में टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे नामे इस प्लस स्टड1 डॉट नामे चुनें एंटर दबाएँ फिर सेमीकॉलन
अब फाइल teststudentजावा को सेव और रन करें
अतः Ctrl एस और Ctrl फ़11 दबाएँ
हमें आउटपुट मिलता है थे रोल नंबर इस 0
थे नामे इस नुल
क्योंकि हमने किसी भी वैल्यू के लिए वेरिएबल इनीशिलाइज नहीं किया है
जावा में फिल्ड्स की रेनडम वैल्यूज नहीं हो सकती हैं
ऑब्जेक्ट के लिए मेमरी निर्धारित करने के पश्चात फिल्ड्स नुल या ज़ेरो में इनिशीलाइज होते हैं
यह काम कंस्ट्रक्टर द्वारा किया जाता है
हम कंस्ट्रक्टर के बारे में आने वाले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब हम फिल्ड्स को स्पष्ट रूप से इनीशिलाइज करेंगे और आउटपुट देखेंगे
अतः टाइप करें int roll no इक्वल टो 50 अगली लाइन स्ट्रिंग नामे इक्वल टो डबल कोट्स में राजू
अब फाइल को सेव और रन करें
CtrlS और Ctrl फ़11 दबाएँ
हमें अपेक्षित आउटपुट प्राप्त होता है थे रोल नंबर इस 50 थे नामे इस राजू
क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास में वेरिएबल को स्पष्ट रुप से इनीशिलाइज किया है
हम देख सकते हैं कि यहाँ fieldsमें मॉडिफायर या डिफॉल्ट मॉडिफायर नहीं है
मॉडिफायर्स को पुनः कॉल करें जिसकी हमने क्रिएटिंग क्लासेस में चर्चा की थी
हम फिल्ड को ऐक्सेस कर सकते हैं क्योंकि studentजावा और teststudentजावा दोनों समान पैकेज में हैं
हम देख सकते हैं कि यहाँ वे समान डिफोल्ट पैकेज में है
हम पैकेज के बारे में अगले ट्यूटोरियल्स में सीखेंगे
अब हम मॉडिफायर को प्राइवेट में बदलेंगे
अतः फील्ड घोषित करने से पहले प्राइवेट टाइप करें
अतः टाइप करें प्राइवेट इंट रोल no50 अगली लाइन प्राइवेट स्ट्रिंग नामे Raju अब studentजावा फाइल को सेव करें
हम देख सकते हैं कि हमें teststudentजावा में एरर्स मिलती हैं
एरर सिंबल पर माउस घुमाएँ
यह दर्शाता है थे फील्ड स्टूडेंट डॉट रोल नंबर इस नोट विजिबल
और थे फील्ड स्टूडेंट डॉट नामे इस नोट विजिबल
यह इसलिए क्योंकि प्राइवेट फिल्ड्स केवल अपने क्लास में ऐक्सेस हो सकते है
आप स्वयं स्टूडेंट क्लास से roll no और नामे को ऐक्सेस करने की कोशिश कर सकते हैं
आप पाएँगे कि आप उन्हें बिना एरर के ऐक्सेस कर सकते हैं
अब मॉडिफायर को प्रोटेक्टेड में बदलें

अब फाइल को सेव करें और प्रोग्राम को रन करें
हम कंसोल पर आउटपुट देखते हैं
रोल नो इस 50 और थे नामे इस राजू यह इसलिए क्योंकि प्रोटेक्टेड फिल्ड्स को समान पैकेजेस में ऐक्सेस किया जा सकता है
अब देखते हैं कि इंस्टेंस फिल्ड्स को क्यों कॉल करते हैं
इंस्टेंस फिल्ड्स को कॉल करते हैं क्योंकि उनकी वैल्यूज क्लास के प्रत्येक इंस्टेंस के लिए विशिष्ट होती हैं
दूसरे शब्दो में क्लास के प्रत्येक ऑब्जेक्ट की विशिष्ट वैल्यूज होगी
टेस्टस्टूडेंट क्लास पर जाएँ
यहाँ हम स्टूडेंट क्लास का एक और ऑब्जेक्ट बनायेंगे
अतः अगली लाइन टाइप करें स्टूडेंट स्पेस स्टड2 इक्वल टो न्यू स्पेस स्टूडेंट ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
अब हम टेस्टस्टूडेंट क्लास में दोनो ऑब्जेक्ट्स को इनीशिलाइज करेंगे
अगली लाइन टाइप करें स्टड1 डॉट roll no चुनें एंटर दबाएँ इक्वल टो 20 सेमीकॉलन
अगली लाइन टाइप करें स्टड1 डॉट नामे चुनें एंटर दबाएँ इक्वल टो डबल कोट्स में रामू सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
इस प्रकार हमने पहले ऑब्जेक्ट के लिए फिल्ड इनीशिलाइज किया है
अब हम दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए फिल्ड को इनीशिलाइज करेंगे
अतः टाइप करें स्टड2 डॉट roll no चुनें इक्वल टो 30 सेमीकॉलन
अगली लाइन स्टड2 डॉट नामे चुनें इक्वल टो डबल कोट्स में श्यामू सेमीकॉलन एंटर दबाएँ
अब प्रिंटलन स्टेटमेंट के बाद टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे रोल नंबर इस प्लस स्टड2 डॉट roll no चुनें और सेमीकॉलन
सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे नामे इस प्लस स्टड2 डॉट नामे चुनें और सेमीकॉलन
अब फाइल को सेव और रन करें Ctrls और Ctrl फ़11 दबाएँ
हमें इस प्रकार आउटपुट प्राप्त होता है
थे roll no इस 20 थे नामे इस रामू roll no इस 30 नामे इस श्यामू
यहाँ स्टड1 और स्टड2 दोनों दो अलग ऑब्जेक्ट्स की दर्शा रहे हैं
इसका अर्थ है कि दो ऑब्जेक्ट्स की विशिष्ट बैल्यूज हैं
हम उसे यहाँ देख सकते हैं
पहले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 20 और रामू हैं
दूसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 30 और श्यामू हैं
अब एक और ऑब्जेक्ट बनाएँ
अतः टाइप करें स्टूडेंट स्पेस स्टड3 इक्वल टो न्यू स्पेस स्टूडेंट ब्रैकेट्स में ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रैकेट्स सेमीकॉलन
अब हम तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज प्रिंट करेंगे
अतः टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे roll no इस प्लस स्टड3 डॉट roll no चुनें सेमीकॉलन
अगली लाइन टाइप करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ब्रैकेट्स और डबल कोट्स में थे नामे इस प्लस स्टड3 डॉट नामे सेमीकॉलन
अब फाइल को सेव और रन करें
अतः Ctrl एस और Ctrl फ़11 दबाएँ
हम देख सकते हैं कि तीसरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज 50 और राजू
ऐसा इसलिए क्योंकि हमने स्टूडेंट क्लास के फिल्ड्स को 50 और राजू के लिए स्पष्ट रूप से इनीशिलाइज किया है
अब फिल्ड्स को डी इनीशिलाइज करने की कोशिश करें और तीसरे ऑब्जेक्ट के लिए आउटपुट देखें
अतः इस ट्यूटोरियल में हमने सीखा
इंस्टेंस फिल्ड्स के बारे में
डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके फिल्ड्स को ऐक्सेस करना
स्व मूल्यांकन के लिए पहले बनाए गए टेस्ट एम्प्लॉयी क्लास में एक ईएमपी2 ऑब्जेक्ट बनाएँ
फिर डॉट ऑपरेटर का उपयोग करके दो ऑब्जेक्ट्स की वैल्यूज इनीशिलाइज करें
पहले ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज के रुप में 55 और प्रिया उपयोग करें
दूसरे ऑब्जेक्ट के लिए वैल्यूज के रुप में 45 और संदीप उपयोग करें
दोनों ऑब्जेक्ट्स के लिए वैल्यूज आउटपुट में प्रदर्शित करें
स्पोकन ट्यूटोरिल के बारे में अधिक जानने के लिए निम्न लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें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
httpspoken tutorialorgNMEICT Intro अब हम इस ट्यूटोरियल के अंत में आ गये हैं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
धन्यवाद